बी.ए. तक की पढ़ाई होती है।

यहाँ पे रखे गए हैं यह बहोत ही मेहँगा मिलता है।

बहोत ही भींड़ लगी हुई है।

यह इसके ईंटे बालू सीमेंट चुके है। यहाँ भी पेड़ लग गए है।

इस किताब दुकान में बहोत सारे आदमी --.

नदी में पुल बनाई जा रही है।

यहाँ पे काफी सारे आदमी घूमने के लिए इस पेन्टिन को --

यह एक सैलून है यह सैलून बहुत बड़ा है यह सैलून मे --

यह रेलवे सुरक्षा बालचोकी --